यह स्टेशन है। यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि ऑरेंज कलर की हैं। यहाँ पर ट्रैन जैसा दिखाई दे रहा है।

यह एक पिंजरा है जो कि जालि जैसा दिखाई दे रहा है उसके अन्दर में कबुत मिट्टू जैसा कुछ --

यह एक गार्डन दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं नीचे में पत्थर लगा हुआ है।

यहाँ पे एक खंभा है उसके पीछे में कुछ झूले टाइप दिखाई दे रहा है।

यहां पर सब घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर में खिड़कियाँ लगी हुई हैं। एक पोस्टर लगा हुआ है। यहां पर बोहोत सारे जेंट्स लोग खड़े हुए हैं।

एक बोहोत बड़ा गेट है जिसमें फूल लगा हुआ है।

यहां पर बोल सब्जी-वब्जी रखी हुई है फल-वल यहां पर एक टोकरी है उसमें कुछ बेर जैसा दिखाई दे रहा है यहां पर रखा हुआ है।

यह बहुत बड़ा बगीचा दिखाई दे रहा है यहां पर दिखाई दे रहा है।